देख सकते हो एक चौराहा है जहां देखो की हो आजु-बाजु जो एक ट्रक खड़ा हुआ है पानी वाला जहां देखो कि पूरा सुन सपाट डला हुआ --

देख सकते हो कि ये एक अं कपड़े की दुकान है जानो कि पुतला कपड़े कुर्ती पहना हुआ है आजू बाजू दो की कुर्तियां लगी हुई है।

देख सकते हो कि अस्पताल के चैंबर है जहां देखोगे कि अस्पताल के चैंबर है जहां देखो कि वो एक--

देख सकते हो ये मिलना माल है माल है जहां देखो कि आजू बाजू देखो कि रोड है जहां माल के नीचे नीचे शॉपिंग बंद है देखो कि एक काउंटर है।

बल्टी भी साफ कर रहा देखो ये कार पूरी ब्लैक कलर की--

देख सकते हो कि एक कपड़ों की शोरूम है जहां देखो की लेडीज वियर मिलता जहां देखो कुर्ती मिलीस ओ कुर्ता मिलता है।

देख सकते हो कि एक मकान के अंदर एक ऑफिस के बाहर है देखो कि मैदान है जहां सामने देखो कि लेंसकारी कार खड़ी हुई है फोर व्हीलर ।

एक फ्रिज रखा हुआ है एक कुत्ता लेटा हुआ है जानवर है रखे हुए हैं।

गद्दे वाले सोफे रखे हुए हैं टेबल रखे हुए हैं अलमारियां रखी हुई हैं देखो दूर दूर तक कई ये सब रखे हुआ--

देख सकते हो कि एक मोबाइल की दुकान है वीवो ओप्पो सैमसंग रिलायंस एम_आई ।

जहां देखो आपके बैंक आपका अधिकार बैंक है जहां प्रिंटर मशीन रखी हुई है।

देखो की कुछ टू कम कर रहे हैं देखो कि बच्चे बहोत स्मार्ट हैं आजू बाजू देखो कि गमले लगे हुए हैं।

देख सकते हो की हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल है ये जो की ए_एम_पी_जी_जी स्कूल कॉलेज के ओफ नरस--

देखो आजू बाजू बच्चों के सामान मिल जाएंगे आपको सब कुछ मिलेंगे नाइपर वाइपर बच्चों के टॉय कॉल है जहां देखो कि और बिल्डिंग के नीचे देखो कि एक बिजली का खंभा लगा हुआ तारें ही तारें लगे हुए हैं।

जोकि मास्क लगाए है सब लोग देखो काउंटर में फाइल रखी हुई एक बोतल रखी एक मोबाइल रखा हुआ है आजू बाजू देखोगे लोग है देखोगे कि पूरी ऑफिस में एक वो लगी हुई है ए_सी --